इ जब खेला दौरान वेका कुछ प्रेशर पोड़ल वेका हथ-खुटा पर वे तकलीफ वेल कुछ गंभीर चोट नि लागल वेथें।

और आदिम थे दिक्कत नि होली कुछ दिखयण मा या कुछ गरम वरम नि होलु भितर मा होल --

पर फिर भी इंडिया छ भीड़ भड़का छैंछ लोग उतरदा छन कुई दिकत नहीं एक ऑटो भी छ जु कि अ-दाईं तरफ जाणू एक यू बाइक वालू बाईं तरफ छ जाण लग्युं ई रस्ता पर घोर जाण वालू कुछ काम पर जाण वालू।

हमते दिख्याणु एक ज़िम क माहौल यमा एक आदिम कुछ मशीन दगड़ा कुछ वर्कआउट कुछ --

अर दु्ई बाइक अर एक गाड़ी हम दिखेणा छ दुई लोग आपस में चलना भी छन ये बैंक जू छ यू मैन रोड पर छ पर भीड़ भाड़ हम तैं दिखेणी नहीं ये पर तो देखदा छ कि ये बैंक छ चु काम का या नी च --